वो कार का नीचे कितना अच्छा से साफ कर रहा है भाई वाव धोने में कितना मजा आता होगा वाव

वाओ सभी गाड़ी लगा हुआ है कोई आगे घूमा हुआ है तो कोई पीछे घूमा हुआ है और लाइट भी जल रहा है ये का मौसम कितना अच्छा है यहाँ पर मुझे भी घुमने के लिए जाना है।

यहां पे बहुत अच्छा लगता है मुझे घूमने में मुझे भी जाना है घूमने के लिए यहां पे वाउ सच में बहुत अच्छा है वाउ ।